और बगल में एक महल बना है जो की बहुत पुराना है उसमें बहुत सारे गुंबज बने हुए हैं जो की सफेद सफेद कलर के दिख रहे हैं और दूर-दूर में कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो की हरे-भरे दिख रहे हैं।

उसमें बहुत सारे खाने के चित्र बने हुए हैं जैसे पिज्जा बर्गर चाऊमीन दोसा इड़ली ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो बीच एक कार है जो कि सफेद कलर की --